ऑफिस का चित्र है और जिसका नाम एस.डी.ए. ऑफिस --

जिस का नाम बाल गोड़ बालघोर एयरपोर्ट है।

और बोहोत सारे समान पड़े हुए हैं और झूमर लगा हुआ है सीलिंग के ऊपर।

एक गिलास के ऊपर बहौत सारी गिलासें पडी हुई हैं।

जिसका नाम यूनियन बैंक है जहाँ पर एक आदमी लगड़ाके चलकर जा रहा है।

स्विमिंग कर रहे हैं और बोहोत सारे बड़े-बड़े राइड लगी हुई हैं।

दरगाह का नाम दरगाह हज़रात अली लतीफ़ शाह लिखा हुआ है।

इंजीनियरिंग इ.सी.इ. और ट्रिपल इ का --

इस चित्र में हम दिख पा रहे हैं की यह एक आ पुरानी सी बिल्डिंग लगी हुई --